और यह पेट्रोल पाइप के थ्रू जमीन में जारा है| पास में एक पेट्रोल पंप भी है और पीछे की और आसमान दिखाई दे रहा है।

और ये डिसेज शानदार और लाजवाब दिखाई दे रही है| टेबल का कलर सफेद दिखाई दे रहा है और ये देखने में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है।